मुझे यहां पर एक मोबाइल की शॉप दिखाई दे रही है भी वो कंपनी के मोबाइल रखे हुए हैं और--

अ म थोड़ा सा ग्रे कलर मे और नीचे ब्लू कलर मे स्काई ब्लू कलर मे पेंट है।

कुछ लड़के छत के ऊपर खड़े हो गए हैं और जिसपे--

और उस एक मशीन के अंदर एक लड़का भी बैठा है जो कि बाहर की ओर की ओर देख रहा है।

मुझे यहां पर एक सज्जन पढ़ाते हुए दिखाइ दे रहे हैं बच्चों को और एक मैडम भी दिखाई दे री हैं जिमने अपनी चोटी को आंगे कर रखा है और--

अ सुट और चुन्नी को बड़ी तरीके से पेहन के रखा हुआ है बहोत सारे बच्चे नीचे जमीन पर फर्श बचा कर बैठे हुए है।

अह कुछ डब्बों को गोल कलर के डब्बे हैं उसमें कुछ अलग तरीके का सामान रखा हुआ--

मुझे यहाँ पे बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है जिस पर में बहोत जादा समान जमा हुआ है तेल--

यहाँ पर झांकी निकल रही है नीचे की बहुत सारी जनता उन उन झांकी को देख रही है एक आदमी ने माक्स पहन के रखा हुआ है और झां --

त्रिशूल बना अह पह हाथ में पकड़ के रखा हुआ है बाकी कुछ दो मूर्तियां और भी हैं जिन स जिनकी गलियों में भी उम्म फूलों की माला डाल--

लगे हुए हैं नीचे यहां पर एक शढ़क साइड सा भी दिखाई दे रहा है जहां की जमीन बहुत सुंदर और साफ सुथरी दिखाई दे रही है ।

पब्लिक स्कूल करके और ऊपर झंडा भी लगा हुआ है ।

ये लगे होगे हैं आर_ओ भी लगे होगे हैं और नीचे--

बहोत सारे मैडल भी टंगे हूं पंखे की वो पंखुड़ियां भी लगी हुई हैं।

और बहोत सारा सामान एक टेबल पर--

कुश टेबल टाइप का कुश रखा हुआ है ऊपर एक पाइप गया हुआ है स्टील का और --

है पर और कुछ हाथ में भी सामान लेके रखा हुआ है एक सामने वाली कस्टमर को बता रहा है पीछे कुछ कॉपी किताब है।

इस्त्री का सामान हैंगर पे टंगा हुआ है कुछ फोटो फ्रेम भी दीवार पर लगे हुए हैं नीचे कुछ सामान--

मुझे यहां पर एक जिम करने वाली मशीन दिखाई दे रही है एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिस पे नीचे की --

कुर्शी और टेबलों को सजाया गया हुआ है और कु टेबल पर कुछ टिशु पेपर और कुछ गुलदस्ते रखे हुए है जिसके अंदर पेड़ो को सजाया गया है ऊपर--

मुझे यहां पर एक सज्जन बैठे हुए नजर आ रहा है जिन्होंने टी शर्ट पहन के रखी हुई है और पैंट जो की मोटरसाइकिल पे बैठी हुए हैं एक--

जो कि कांच से बना हुआ है वहां पे फिसल पट्टी भी बनी हुई है एक कुछ मोटर साइकिलें भी खड़ी हुई हैं यहां पे सफेद कलर का एक बाउंड्री टाइप का है इसके अंदर--